नीचे देखोगे कि बहुत सारे डब्बे रखे हुए कचरा रखा हुआ है।

देख सकते हो कि ये पिक में एक ट्रेन है जिसमें ट्रेन को पोता हुआ है। ऑरेज सफेद और हरा--

पीछे पट्टी में घास लगी हुई है और सामने देखो बहोत से पेड़ लगे--

एक मकान के सामने जहां जी जिला लग रहा हुआ है चंद्रपुर के मकान के ऊपर नीले कलर का पुता हुआ सफेद कलर का पुता हुआ ऊपर आसमान खुला हुआ है।

देखो हर जगह एक कंप्यूटर रखे हुए दो से तीन से चार कंप्यूटर रखे हुए हैं देखो एक ही काउंटर में--

देख सकते हो कि एक शॉप है शॉप बाजू में है काउंटर में लगी हुई है उसके बाद सामने एक्टिवा खड़ी हुई है एक्टिवा के सामने है।

ई रिक्शे खड़े हुए हैं कार खड़ी हुई है कार के साथ साथ फोर व्हीलर ई रिक्शा और रिक्शा खाली अलग से खरी हुई है।

देखा सकते हैं स्कूल में कंपटीशन चल रहा है बच्चों का और सर लोग कुछ देख रहे हो बच्चे कार्य आकृतियां बना रहे हैं दिखने बहोत सारे बच्चे आएंगे--

कुछ दे रही है उसके बाजू में देखो की एक ब्लैक रोड है जो कत्थे कलर --

देखोगे चश्मे की शॉप है काउंटर में देखोगे बहोत सारे कांच के क ड डब्बे में प्लस चश्मे रखे हुए हैं कॉन कबर्ड में देखोगे की लेन से चश्मे सजे हुए हैं नाइंटी परसेंट देखो--

देख सकते हैं माता का पंडाल है माता का पंडाल है आजु बाजू देखो--

जंगल के आस पास बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए एक रास्ता गया सामने एक ये--